पंद्रह बीस कमरे हैं और ये इमारत --

और इसमें ईसाई लोग जाकर के इबादत करते हैं। इस चर्च में इशा मसीह की प्रतिमा होती है जोके प्लस क्रॉस के निशान पे टंगी होती है।